ठंडे के कोने में बहुत सारा पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक भगवान का मूर्ति दिख रहा है।

यह कमरा के दरवाजे का रंग ब्राउन कलर का है।

आयरन के बॉक्स भी बहुत सारे दिख रहे है।

कुछ कप्स के ऊपर ढक्कन भी ढका हुआ है।

मोर अपना पंखों को फैला कर बैठ रहा है।

दुकान के आगे बहोत बड़ा सा कार्टून बॉक्स भी रखा हुआ है।

यह फोटो में मुझे बहुत सारा इंसान दिख रहा है।

फोटो में मुझे एक फैक्ट्री दिख रहा है।

फैक्ट्री के सामने बहोत सारा घर भी बना हुआ है।

यह स्टेच्यू लोग एक शीशे के डब्बे के अंदर रखा हुआ है।

यह क्लास रूम के बाहर दीवार में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के पोस्टर लगा कर रखा हुआ है।

दोनों बच्चा जूता पहना हुआ है।

यह रूम का दीवार का रंग पर्पल कलर का है।

दीवार में काफी लिखा हुआ वाला लाइट जल रहा है।

यह फोटो में मुझे एक कमरा नजर आ रहा है।

सीलिंग के ऊपर पंखा भी दिख रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक लंबा सा ट्रेन दिख रहा है।

दुकान के कोने में एक ए_टी_एम भी है।